बच्चों को बता रहे हैं और बोहोत सारी चेयर हैं जो कि लड़का-लड़की बैठे हुए हैं उस चेयर पे अपनी उनके पास बुक्स कॉपी हैं।

यहाॅं पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि कांच में देख के अपनी फोटो क्लिक कर रहा है उसके पीछे एक और लड़का खड़ा हुआ है और --

और जैसे कि आसमान दिख रहा हैं और कुछ लोग भी हैं जो कि दिख नहीं रहे परछाई दिख रह --

यँहा पर एक किला बना हुआ है और जो कि बगल में कुछ घर बने हुए हैं ।

एक स्कूल है और स्कूल में जो कोरिडोर होता है और जो कि बहोत सारी बेंच हैं बेंचेस है।

यहाँ पर एक अ उम मतलब खलेने वाली गेम्स हैं। मक्की माउस है और जम्प है।

कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं। उसके बगल में काफी घर वगैरह है। कुछ पेड़ है। रेत रखी हुई है और काफी सारी गाड़िया खड़ी --

यहाँ पर कुछ बना हूआ है जोकि दरगाह टाइप और काफी बड़ा बना हूआ है।

यहाँ पर दरगाह है और काफी बड़ा है दरगाह और जोकि कुछ लोग हैं खड़े हैं कुछ बैठे हैं।